काला है जिसका नाम कार्यालय सयुंक्त है पे गमला रखे हुए हैं पेड़ पौधे लगे हुए हैं बंगले में और काफी बिल्डिंग है दो तीन बिल्डिंग बनी हुई है यहा पे एक आदमी है जो अंदर खड़ा हुआ है कूलर बाहर रखा हुआ है।

यह काफी बड़ी सी है और खाली मैदान भी पड़ा हुआ है कई सारे रूम दिए गए रूम में कोई लोग है बिल्डिंग में छज्जा भी दिया गया है छज्जे पे ये खाली छज्जा है यहां पे --

बहुत सुंदर लाइटिंग वाला नज़ारा लग रहा है चर्च में कई तरीके की मोमबत्तिया भी रखी हुई है चर्च को बाहर तक डेकोरशन कर रखा है इन्होने--

ये भी एक चर्च है यहा पे कई लोग बाहर बाहर के साइड है कई सारे चर्च बने हुए है यहां पे लोगो में मोमबतियां जला रखी है।

ये एक बिल्डिंग है यहाँ पे वर्कर्स काम करते है कई सारे वर्कर्स है जो मास्क पहने हुए है एक उनका मालिक है जो एडवाइस दे रहा है सबको।

कई सारे कहते है शिक्षा दिए गए है बिल्डिंग काफी ऊँची एक बाहर की तरफ बोर्ड है पीछे की तरफ और ऊपर एक ग्रीन कलर का पेड़ बना हुआ है और ऑटो में --

डाकघर है जिसका नाम है भारतीय डाक बैंक एटीएम है यहां पे एक आदमी बाइक पे बिठा हुआ है।

छ सात सीढ़ी हुई है एक क्या कहते विंडो दी गयी है ऊपर एक बोर्ड डला हुआ जिस पर बैंक का नाम लखा हुआ है और ये बहुत --

और क्या कहते है खाने पीने का सामान उसके पास मे भी एक दुकान है एक पेड़ लगा हुआ है एक टेन लगी हुई है और एक कोल्डड्रिंक का सामान --

स्कूटी भी खड़ा है ऑटो भी खड़ा है पेड़ काफी बड़ा सा है और यहां पे जगह जगह ठेले सब्जियों के फल के लगे हुए है और यहां पे एक लड़का चलता हुआ जा रहा है टाइम है मास्क --

ब्लू कलर के है क्या कहते है व्हाइट कलर का भी है और बो देख और भी चेयर पड़ी और एक आदमी बात कर रहा है उस आदमी से--